jmol में structures from databases के इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे
* pubchem database से रासायनिक structures load करना और
* gchempaint में बनाये गए 2d structures को jmol में 3d models में बदलना
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको jmol application के साथ परिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित tutorials के लिए हमारी उपलब्ध website पर जाएँ
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
* ubuntu लिनक्स os version 1204
* jmol version 1222
* java version 7
* gchempaint version 01210
* mozilla firefox browser 220
मैंने एक नयी jmol application window खोली है
jmol database सूचीबद्ध compounds के structures को load करने की विशेषता रखता है
menu bar पर file menu एक विकल्प get mol रखता है
यह रासायनिक structure database pubchem से अणुओं को loads करता है
यह protein data bank से protein structures को load करने के लिए एक अन्य विकल्प get pdb रखता है
इस विशेषता को विस्तृत रूप से अन्य tutorial में समझाया जायेगा
panel पर रासायनिक structure load करने के लिए get mol पर click करें
screen पर एक input dialog box खुलता है
database में सूचीबद्ध कोई भी अणु text box में निम्न टाइप करके लोड किया जा सकता है:
common नेम या iupac नेम
cas number
cid number
inchi identifier या
smiles identifier
एक निश्चित रसायन के identification numbers की जानकारी के लिए pubchem database website पर जाएँ
अब screen पर phenol दिखाते हैं
अब input text box में phenol type करें
ok button पर click करें
panel पर phenol का model दिखता है
हम भिन्न प्रस्तुतीकरण विकल्पों को प्रयोग करके phenol के प्रदर्शन को रूपांतरित कर सकते हैं
ये विकल्प menu bar और popअप menu में सूचीबद्ध किये गए हैं
हम phenol की benzene ring में प्रतिस्थापी जोड़ सकते हैं
सबसे पहले model मे परमाणुओं को label करते हैं
display menu पर click करें और label select करें number विकल्प पर click करें
अब carbon परमाणु number 2 से जुड़े hydrogen number 10 को amino group से बदलें
modelkit menu खोलें विकल्पों से nitrogen select करें
hydrogen number 10 पर click करें
panel पर यह paraamino phenol का अणु है
हम display को sticks display से बदलेंगे
modelkit menu से exit करें
popअप menu खोलें नीचे style पर जाएँ scheme select करें और sticks विकल्प पर click करें
panel पर हमारे पास sticks display में paraaminophenol का model है
complex structures जिनको बनाना मुश्किल है panel पर आसानी से लोड किये जा सकते हैं
उदाहरण के लिए cholesterol
file menu पर click करें
get mol विकल्प पर click करें text box में type करें cholesterol
ok button पर click करें
panel पर cholesterol का एक अणु दिखता है
हम अणु में विशेषताओं जैसे doublebond और sidechain को highlight कर सकते हैं
doublebond को highlight करने के लिए सबसे पहले doublebond के carbon परमाणुओं के रंग को बदलें
tool bar में select atoms icon पर click करें
फिर doublebond में शामिल हुए carbon परमाणुओं पर click करें
परमाणुओं के चारो ओर एक पीला yellow दिखता है
popअप menu खोलें
नीचे color पर जाएँ atoms select करें और orange विकल्प पर click करें
अब tool bar में rotate molecule विकल्प पर click करें
cholesterol model में doublebond double नारंगी रंग में है
उसी प्रकार हम side chain में carbons को highlight कर सकते हैं
popअप menu प्रयोग करके रंग को बैंगनी में बदलें
panel पर हमारे पास हाईलाइट की हुई महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ cholesterol का model है
एक नियत कार्य में
* database से caffeine का structure load करें
* अणु में महत्वपूर्ण विशेषताओं को highlight करें
* display को wireframe में रूपांतरित करें
अब मैं jmol की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता बताऊँगी
हम अणुओं के 2d structures को एक अन्य सॉफ्टवेयर में 3d models में बदल सकते हैं
यहाँ panel पर here पास aminoacid alanine का स्ट्रक्चर है
इस अणु का 2d structure gchempaint नामक सॉफ्टवेयर में बनाया गया था
structure को mol file की तरह सेव किया गया था
gchempaint 2d रासायनिक structures बनाने के लिए open source सॉफ्टवेयर है
gchempaint पर tutorials निम्न link पर उपलब्ध हैं
structures को बनाने और mol format में सेव करने के लिए analysis of compounds tutorial देखें
इस gchempaint display area पर दर्शाये 2d रेखाचित्र निम्न के हैं
* amino acidalanine
* nucliosideadenosine
* saccharidealphad glucopyranose
मैंने इन्हें mol format में अपने desktop पर सेव कर लिया है
सबसे पहले alanine के 2d structure को jmol application में 3d model में देखते हैं
अतः मैं एक नयी jmol window खोलूंगी
tool bar में open a file icon पर click करें
मैं desktop folder चुनूँगी और open पर click करुँगी alanine mol फाइल चुनें और open button पर click करें
screen पर alanine का model खुलता है
modelkit menu खोलें और fix hydrogens and minimize विकल्प पर click करें
structure पर hydrogens जोड़े गए हैं और energy मिनिमाइज़ हुई है
mol file की तरह हम menu bar और popअप menu को भी प्रयोग करके display बदल सकते हैं
यहाँ jmol में adenosine mol का 3d model है
और यह jmol में alphadglucopyranose mol का 3d model है
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने निम्न करना सीखा
* pubchem डेटाबेस से रासायनिक structures load करना
* phenol और cholesterol के display में रूपांतरण करना
* gchempaint में बने 2d structures को jmol में 3d models में बदलना
* alanine adenosine और alphadglucopyranose के 2d structures को 3d models में बदलना
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
#gchempaint में निम्न amino acids के 2d structures बनायें
* cysteine
* histidine और
* phenylalanine
# mol files में सेव करें
#jmol में files खोलें और display को रूपांतरित करें
इस url पर उपलब्ध video देखें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
यह भारत सरकार के it it आर दी के आई सी टी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता mission द्वारा समर्थित है